इस पिक में आप देख सकते है बहोत बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर गाडिया भी है यहाँ पर ट्री भी प्रजेंट है और देख सकते है यहाँ पर --

अ हिनो सोफा है जोकि ज्वेलरी शॉप है यहाँ पर महिलाओं पुरुष दरवाजे पर हैं।

वहा पर में मिर्रोर्स लगे हुए है और सोफा लगा हुआ है चेयर लगी हुई है।

और गाड़ी दिखाई दे रही है इसमें हमे ट्रीज भी दिखाई दे रही है एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में मुझे नज़र आ रहा है की--

बहोत सारे लोग नज़र ऐ बाइक्स नज़र आरही है इसमे मुझे--

इस पिक में मुझे दिखाई देरा है के--

जहा पर वाइट कलर के और भी पिल्स है इसमें दो--

इस पिक में मुझे देखने को मिल रहा है की इसमें ग्रीन री ग्रीन री है इसमें आसमान है इसमें--

और दर्रिया है दर्रिया में किस्ती है।

राज़ भी मोजूद है यहा पर बंज़र जमीन भी है कुछ--

यहा पर सुगरकैन अ प्लांट्स है।

जो इस पारक में देखने को मिलेगी आपको--

इस पिक में मुझे रेलवे ट्रेस्क नज़र आ रहा है जहा पर--

वो एक महीला जो की सब्जी मार्केट में है जहा पर ये शोप कीपर्स ओपेन है इसका पेटी आप देख सकते है।

देख सकते है इसमें कितना अछा व्यू आरा है यहा पर--

बोहोत ही खुबसूरत मंजर देखने को मिलरा है।

इस पिक्चर में मुझे नज़र आरा है की इसमें--

ये ड्राय फ्रूट अ खाली नही भेजता है इसमें बहोत सारे मसाले बेच ड्राय फ्रूट --

ब्लू कलर का और फुटपाथ दिख रहा है और ग्रीन ग्रिल भी दिख रही है।

इस अ पिक्चर में मुझे दिख रहा है की इस में--

यहाँ पर अवार्ड्स भी हैं ये डांस क्लब है आई_एस यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट कलर्स कपड़े पहने हैं बच्चों ने।